समान है यहां एक फ्रिज वाशिंग मश--

के हाथ मे एक झंडा भी है--

यहां एक आदमी गाड़ी पार्क कर रहा है और एक आदमी--

चल रहा है पास में मिट्टी का ढेर रखा हुआ है।

यह एक मंच का दृश्य हैं मंच पर कुछ लोग डांस कर रहे हैं।

जो टोल नाके से टो होकर जा रही है आस पास हरियाली भी छाई हुई है।

और एक आदमी इंस्ट्रूमेंट को रिपेयर कर रहा है।

और सूरज भी दिखाई दे रहा है शाम का दृश्य है सूरज ने अपनी लालिमा बिछाई हुई है।

सामने की तरफ सूरज ढलता हुआ दिखाई दे रहा है।